यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। ये इमारत बनने के काम कर रहे हैं। ये शायद अपार्टमेंट बना रहे हैं और बोहोत से वायर्स रॉड्स ग्रील्स ऐसे सब दिख रहे हैं।

ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के सामने बहोत एक स्क्वायर टाइप में के दाले गए हैं और उनका रंग है सफ़ेद --